देखने में भी बढ़िया है सब चीज़ बढ़िया है देखने में भी बढ़िया है आदमी सब भी है देखने में बहुत अच्छा है ।

भी लगा है देखने बहोत अच्छा है । बहोत सुन्दर लग रहा है देखने में ।

बड़ा छै देखने में ये भी देखने में अच्छा लगता है बहुत अच्छा ---

एक भी आदमी यहाँ पे एक आ रहा है । बाहर एरिया है देखने में बहोत बढ़िया लग रहा है ।

यह देखने में बहुत बढ़ियां लग रहा है| एक यहाँ पर लड़का है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है फोन से सेल्फ़ी ले रहा है क्या बादल-चदल है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।